हम देख सकते हैं की यहाँ एक नाव है फिर पानी है और अ नीला आसमान है। बगल में थोड़े बहुत पत्थर है।

हॉल में चेयर वगेरा भी है।

याहा पे एक ग्रिल हैं एंट्री पॉइंट है एक्सिट पॉइंट हैं |

सुधा लिखा हुआ है बरौनी डेरी लिखी हुई है। यहाँ पे मिठाई दूध अनेक प्रकार के सामान मिलते हैं।

इस ऑफिस में कई पंखे हैं ए.सी. है पर्दे लगे हुए हैं लोहे के ग्रिल हैं खिड़कियाँ भी हैं।

भवन में बहुत सारी खिड़किया है ।

यह एक राजकीय पोलिटिकनिक लखीसराय का भवन है इसके बाहर ब्लैक कलर का गेट है आस-पास बहुत सारे पेड़-पौधे भी हैं भवन के बाहर --